इस तस्वीर मे सजावट की गई है जिसमे हरे रंग ब्लू रंग लाल रंग और कई तरह की सजावट ऐसा लग रहा है जैसे दीवाल को सजाय गया हो।

यह दिखने में एक किराना दुकान की तरह ही लग रहा है जिसमे अधिकतर पेप्सी और ड्रिंक की बोतल रखे गए है।

इसमें अधितकर तो पेप्सी और वगैरा वगैरा के बोतल दिख रहे है और उधर साबुन उबून जैसे लग रहा है रखा गया है।

इसके अंदर चैंबर बने हुए हैं जो की उसमें बाहर शीशे लगे हुए हैं और गेट भी और यहाँ कुछ तस्वीरें लगाई गई है जो की बाइक के प्रचार के लिए है और बाइक के आगे एक बैलून भी लगे है।

यह दुकान देखने में अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आज ही इसका उद्घाटन होने वाला है और सजावट के लिए कुछ बैलून लगाए गए हैं जो दिखने में बहो --

यहाँ एक गांव और देहात के तस्वीर लग रहे है जिसमे एक टेंपू आता-जाता दिखाई दे रहा है और एक साइकिल लगी हुई है।